ये बैंक हैं और बैंक के बाजू मे उसी बैंक का ए टी एम भी हैं और बैंक के बाहर नीचे--

और बढ़िया इसमें टीन शेड है दीन की समय--